ये एक कपड़े की दुकान की तस्वीर है जिसके दुकान के अंदर एक इंसान बैठा हुआ कुर्सी पे।

यह एक कपड़े की दुकान की तस्वीर है जहां पर रैक पे लाइन से कपड़े रखे हुए एक के ऊपर एक जिसमें जींस और लोअर्स हैं।

मंदिर के किनारे बहुमंजिला इमारत के किनारे कुछ टोटो लगे हुए हैं जिसे ई_रिक्शा भी बोलते हैं।

तस्वीर में बौद्ध भगवान की मूर्ति बनी हुई है। जो की एक किलोमीटर हाईट पर है।

यह नई के दुकान की तस्वीर है जिसमें एक इंसान कुर्सी पर बैठा है जिसका कलर ब्लू है।

एक फाउंटेन के पास खींचा हुआ एक तस्वीर है जहां से पानी गिर रहा है यहां पे एक लड़का सामने बैठा हुआ है फाउंटेन के बगल में।

यह खुला मैदान है इसके आसपास कुछ पत्थर हैं।

यह सरकारी दफ्तर की तस्वीर है।

लगा हुआ जिसका कलर हल्का पीला है उसपे लिखा हुआ स्टेटस इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राज्य स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कल्याण संस्थान।

यहां पे पास पास बहोत सारे लोग है कुछ बुड्ढे लोग है कुछ यंग लोग हैं कुछ औरतें हैं।

पीठ पर बैग है एक छोटा सा बच्चा है दाहिने साइड ।

फूल के दुकान की एक तस्वीर जहां पे विभिन्न प्रकार के फूल है।

प्रतिमा जिस सिंहासन पर बैठी हुई है उसके साइड का चांदी लगा हुआ है।

कुछ नारियल के पेड़ बने हुए हैं गाड़ी धोने के लिए एक स्लैंट बनाया गया है।

वहां पे एक आदमी दिख रहा है शर्ट पहना हुआ है ब्लू कलर का पैंट पहना हुआ--

राइट साइड में एक हाई वोल्टेज करंट के पोल है।

एक डांस क्लास की तस्वीर है जहां बहोत सारे बच्चे डांस करते हुए दिख रहे हैं।

नीचे वाली दुकान के छत के पास ब्लैक कलर का फ्लेक्स लगा हुआ है जिसके ऊपर कीरोन स्टोर्स लिखा हुआ है।

सबसे निचले माले पर चेन गेट लगा हुआ है ब्लू कलर का।

रोड पे जहां पे दिखाया जा रहा है रोड के दोनों साइड लोग खड़े और बैठे हैं लोग इस छवि को देख रहे--

सामने बाईं साइड पे चार ट्यूबलाइट डी_टी_एच की छतरी उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है उसके अंदर भी एक के ऊपर एक तार का बंडल रखा हुआ है जिसमें ब्लू येलो लाल कलर के प्लास्टिक लगी हुई है।

चारों तरफ हरा भरा मैदान है और कुछ बड़े बड़े पेड़ भी है।

इस तस्वीर में एक सुखी नदी दिखाई दे रही है जिसमें छोटे बड़े पत्थर और कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रही है।

ये एक नदी किनारे की तस्वीर है जिसमे लकड़ी के बने दो छोटे छोटे बूट दिख रहे है एक बूट का कलर हल्का नीला और उजला है और दूस--